एक पिक-अप भी दिखाई दे रही है जो नीले कलर की है और यहाँ पर एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ हमे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और यहाँ पर बहुत सारा पानी भी हमें दिखाई दे रहा है ।

काला कलर का है और कुछ बेंच भी रखी हुई और टी.वी. लगी हुई है दीवाल पर और दीवाल --

है और यहाँ पर पानी की नलकी है और कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और कुर्सी राखी हुई है काले कलर की ---

यहां पर कुछ बच्चे डांस कर रहे है और जिसने हरे कलर की शर्ट पहनी हुई है और काले कलर की जूते पहनी --

दिखाई दे रहे है कूछ डस्टविन भी दिख रहा है यहां बेड रखा हुआ है जिस पर नीला कलर की चादर बिछी हुई है।

जो हरे कलर की है और कुछ लोग सोये हुए है और यहाँ पर आधे लोग बैठे हुए है।

फ़ेअर लिखा हुआ है और चद्दर भी लगी है और बिजली के तार भी दिखाई दे रहे हैं और ऊपर जाने के लिए रास्ता भी नज़र आ रहा --

कांच की टेबिल रखी हुई है और यहां पर कुछ बेल्ट भी दिखाई दे रहे लाइट भी है और कारपेट भी बिछी--